वो है ठीक इसके बगल में बहुत सारी इटें बिखरी हुई है और बहुत सारा सामान है।

जिसमें ऊपर की और बहुत सारी लाईटे बर रही है और पीछे की ओर बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी है। ठीक इसके सीधे में एक डेकोरेशन किया गया है जो फूलो से सजाया गया है।

इस दृश्य में एक झील दिख रही है।

इस तस्वीर में सामने एक आंगन बाडी दिख रही है जिसमे दीवारों पे --

इसके ठीक पीछे एक गोल घर जैसा उ रेड कलर का हॉउस दिख रहा है।

दिखाई दे रहा है जिसमें हरी मिर्च और कुटी हुई मिर्च डाली गई है और कुछ स्पाइसेज भी डाले गए हैं।

टमेटो की रेड कलर की चटनी रखी गई है ।

इसके बगल में एक दर्पण और लगाया गया है।

एक बोहोत बड़ा ग्राउंड है जिसमे एक मनुष्य लेटा हुआ है और वो अपनी पैर का उपचार किसी एक --